यहाँ एक पार्क बना हुआ हैं पार्क में हरी भरी घास दिखाई दे रही हैं उसके आस पास छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

म-म-मए-एक नॉर्मल फैन लगा हुआ है इसका कलर व्हाइट है कुछ काँच के सीसे लगे हुए है।